इधर लाल कलर की और पीले रंग की नीचे काले रंग की और ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है।

उसके साइड में एक पन्नी भी रखी हुई है।

पेट्रोल टंकी का फोटो है जिसमें की चार पेट्रोल टंकी लगी हुई है और दो गाड़ियां खड़ी है।

ऊपर बहुत सारे लाल रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

उसके आस पास कुर्सियां बिछी हुई हैं जो की नीले और पीले रंग में रंगी हुई है।

इमारत के बाहर दो पहिए का वाहन उस पर रखा है हेलमेट भी दिखाई दे रहा है।

यह एक मैदान का फोटो है जिस मैदान का रंग लाल है।

और पीछे बिजली के तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

झील का पानी सफेद और नीला है।

बाहर अच्छे खासे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और कुछ आदमी मछली को लेने के लिए आए हुए हैं मछुआरों के पास ऑरेंज रंग का डिब्बा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और उत्सव में कई सारे तरह के फूल लगे हुए हैं।